जो हरे और मटमैले रंग की है।

पीले है और जिसपे प्राइस लिखे हुए हैं तीन सौ पिचहत्तर तीन सौ पचपन तीन सौ निन्यानबे दो सौ निन्यानबे । यहां की छत सफेद रंग की है।

दो झंडे हैं लाल रंग के। इसके पीछे जो है नदी है जिसका पानी जो है वो मटमैला हो रखा है।

जिसके अंदर कई सारे लाल ईट बिछे हुए हैं।

जिस पर दो तारें भी बंधी हुई हैं।

जिस पर एक बैनर लगा हुआ है। पास में ऐं पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे किसान लिखा हुआ है।

और इस पर विश फॉर इट वर्क लिखा हुआ है।

यहाँ की सारी मशीनें काली हैं। दीवार पर एक स्विच बोर्ड लगा है ले लेटासिटी का सफेद रंग का।

और इसके हाथ में एक हरे रंग का मग्गा है।

जो कि स्कूल के बीच में बना हुआ है।

ग्राउंड में घास उगी हुई है।

कई सारे ईटें हैं उसमें।